यहाँ पर छत है लोहा बिछा हुआ है टिन रखी हुई है लोग है खंबा लगा हुआ है पेड़ लगे हुए है रस्सी बँधी हुई है बाँस भी लगे हुए है।

फूलों की बारिश हो रही है औ--र यहाँ पर बहुत सारे लाइटिंग-लाइटिंग है और अनारदाने जल रहे हैं।

यहाँ पर बहोत सारे बच्चे है लड़कियां है सर है चैनल गेट लगा हुआ है निचे रंग-बिरंगे डब्बा डले हुआ है रंग-बिरंगे डिब्बे डले हुए है रंगोली बन रही है।

ह्म्म्म और तालाब है छोटे-छोटे पेड़ लगे हुए है।